जिसमें एल_जी एंड सुजाता के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है जिसका नाम श्री ब्यूटी पार्लर नजर आ रहा --

ही नजर आ रही है यहां पर गमले भी नजर आ रहे हैं।

भाटी ऑटो रिपेयरिंग ओटोमोबाइल्स की अच्छी शॉप है यहां पर--

यह एक हरी भरी सब्जियों की क्यारी नजर आ रही --

जहां पर सफेद कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है यहां --

दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यह पार्लर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहां पर अलग अलग टाइप के कपड़े नजर आ रहे हैं।

ब्यूटी पार्लर नजर आ रहा है।